और खुबसूरत भी है। सब कुछ अच्छा खासा दिख रहा है बहुत प्यारा लग रहा हैं।

बहुत सुंदर दिख रहा है बहुत खुबसूरत अच्छा खासा है और खुबसूरत लग भी रहा है बहुत सुंदर है बहुत ठीक-ठाक दिख रहा है |

खुबसूरत काफी हैं सब ढेर सारा और अपना कर रहे हैं लोग जोकि ठीक-ठाक दिख रहा है।

और अच्छा खासा लग भी रहा है और इसमें दो लड़के हैं दो जो अपना काम --

पूरा म मकेनिक है जो मकेनिक है अपना माल बनवा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।

शेविंग करवा रहा एक लड़का और मोबाइल लिए है हाथ में।

खुबसूरत भी है सब कुछ अच्छा खासा है यहाँ।

बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे जगह भी अच्छा खासा है और बहुत सुंन्दर भी दिख रहा है यहाँ पे |